सामने एक व्यक्ति जो फोटो क्लिक कर रहे है ब्लैक कलर के कपड़े मै उनके पीछे भी एक व्यक्ति हैं।

यहाँ एक ए.टी.एम है जहाँ पे अंदर लोग खड़े है पैसे निकलना के लिए। ए.टी.एम का गेट जो है सीसे का है जो के खुला है एक गेट ओर एक गेट बंद है।

यहाँ एक व्यक्ति है जो के सामने की और खड़ा हुए देख रहे है हेअल्थी व्यक्ति है और इनका दुकान बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे भिड़ है ये लाइब्रेरी है जैसा दिख रहा है जिसमें की बहुत सारे भिड़ है बहुत सारी बुक्स रखे हुए है यहाँ पे और बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुर्सी पे

और अलग-अलग कंपनियों के पेन है और ये व्यक्ति एक कस्टमर से बात कर रहे है बुक को लेकर के। और इसमें सीढ़िया भी हैं।

और बहुत सारे पेन दिख रहे हैं रेड कलर के ब्लू कलर के ब्लैक कलर के येलो कलर के पिंक कलर के और यहा पस बहुत सारे मार्कर भी हैं और हाईलाइटर भी हैं।

यहाँ एक लड़का जो की अपना बाल कटाने आया है इसके बाल मै क्लिप लगाया हुआ है तीन टो बैगनी कलर का पिंक कलर का नीले कलर का।